यह मंदिर काफी प्राचीन और अद्भुत लग रहा है इसे बना ने में काफी कलाकृति और तकनीक की जरुरत है ।